इस इमेज में एक सलून है जिसका उद्घाटन किया जा रहा है जिसमे छे से सात लोग शामिल हुए है और यहाँ पर बहुत सारे बलून्स लगे हुए है जिसका कलर ब्लू और--

एक इंसान का बाल काट रहे है और दूसरा उन्हें देख रहा है यहाँ पे बहुत सारे बोट-बॉटल्स है और एक शीशा भी --

यह एक इंटरमिडियट महाविद्यालय है जहाँ पे बहोत सारे --

यह एक फूलो से भरा खेत है जहाँ पे बहोत सारे लोग फूलो को तोड़ रहे है।

ये जगह एक भारतीय स्टेट बैं-बैंक की जगह है और ये एक चंपारण चंपर्जन नगर का बैंक है।

जो दवाई लिखने और देने में इनकी मदद कर रहे हैं।

किसी चींज का शायद इंतजार कर रहे हैं और स्टेडियम के नीचे जो घासे लगी हुई हैं इनका कलर हरा है।

एक पंडित भी है जिससे एक महिला कुछ बात कर रही है और बहोत सारे बच्चे भी हैं।